meet the gimp में आपका स्वागत है यह ट्यूटोरियल उत्तरी germany के bremen में rolf steinort द्वारा निर्मित है
इस tutorial में मैं drawing tools की विस्तारपूर्वक व्याख्या करूँगा
पहला drawing tool pencil है और यह बहुत मजबूत किनारों के साथ कार्य करती है
यहाँ मैंने एक सीधी रेखा खींची है और यदि मैं image पर zoom करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक pixel काला या सफ़ेद है
जब मैं drawing के लिए paint brush का चयन करता हूँ तो मुझे एक line प्राप्त होती है जिसके soft किनारे होते हैं
और जब मैं वापस zoom पर switch करता हूँ तो आप pencil से खींचे जाने पर दृश्य जैगीज़ से युक्त एक hard line देख सकते हैं
और जब मैं paint brush से खींचता हूँ तो मुझे एक soft line प्राप्त होती है
यहाँ वापस pencil पर आयें
आप देखते हैं कि pencil के किनारे बहुत sharp हैं और paint brush के किनारे चिकने हैं
किन्तु आप यहाँ जैगीज़ नहीं देख सकते हैं
इसे आँख की trick कहा जाता है
जब मैं इसे बड़ा करती हूँ तो आप यहाँ इसे antialiest antiएलिएस्ट देखते हैं
यह pencil एवं paint brush के बीच मुख्य अंतर है
अन्यथा वे लगभग समान हैं और उनके विकल्प भी लगभग समान हैं
अब paint brush के साथ शुरू करते हैं
tool box में paint brush tool पर click करें और आपको उसके लिए विकल्प प्राप्त होते हैं
ये modes बिल्कुल layer modes के समान है चूँकि आप यहाँ multiply multiply या overlay overlay और अन्य को देख सकते हैं
यहाँ opacity opacity slider दिया गया है और इसका उपयोग करके आप दृश्यता और line के रंग को नियंत्रित कर सकते हैं
मैं मानों 25% पर slide करता हूँ और अब जब मैं खींचता हूँ तो मुझे काले के बजाय हल्के grey रंग की line प्राप्त होती है
और जब मैं इस line को एक नई line से cross करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि रंग गहरा होता जाता है किन्तु यह केवल तब होता है यदि मैं इसके ऊपर एक नई line खींचता हूँ
मैं इस भाग में zoom करता हूँ और एक अपेक्षाकृत बड़ी brush का चयन करता हूँ
और अब जब मैं line खींचता हूँ तो यह gray रंग की होती है
और मैं दूसरी line खींचता हूँ और इन दो लाइनों का कटान gray gray रंग का होता है
और अब मैं यहाँ तीसरी line खींचता हूँ और कटान अधिक gray gray रंग का होता जाता है किन्तु जब मैं उसी line पर वापस paint करता हूँ तो इसका रंग गहरा नहीं होता है
अतः यह केवल stroke to stroke कार्य करता है और आप आसानी से एक क्षेत्र को gray रंग से paint कर सकते हैं और आपको इसे भरते समय ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है
यहाँ आप incremental incremental नामक एक विकल्प देख सकते हैं
जब आप incremental incremental का चयन करते हैं तो आपको अधिक मजबूत प्रभाव प्राप्त होता है
brushes के विकल्पों पर जाते हैं और यहाँ आप let सकते हैं कि इस brush की spacing 20% पर set की गई है
brushes साधारणतया एक stamp होती है जो एक ही pattern को बारबार stamp करता है
और जब मैं यहाँ zoom करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि brush के आकार के 20% के बाद वहाँ इस brush का अगला impression होता है
यहाँ प्रत्येक brush स्वयं को ढक लेती है
जब आप incremental incremental विकल्प को deselect करते हैं तो आप brush की प्रत्येक stamping देख सकते हैं किन्तु वहां कोई भी painting नहीं है और मुझे एक दूसरी line शुरू करनी है
और जब मैं incremental का चयन करता हूँ मैं परतदरपरत paint कर सकता हूँ
100% पर वापस जाएँ
मैंने opacity एवं incremental विकल्पों को कवर कर लिया है
100% की opacity पर वापस जाते हैं और मैं पुनः संपूर्ण काला रंग खींच सकता हूँ
incremental केवल तभी सार्थक होता है यदि आपने 100% से कम opacity सेट की हो
scale slider यहाँ pen के आकार को नियंत्रित करता है और जब मैं नीचे 1 तक slider करता हूँ आपको एक छोटे आकार का brush प्राप्त होता है
जब मैं brush को मानों 005 पर scale करता हूँ मैं एक बहुत पतली line खींच सकता हूँ और मैं slider को मानों 2 पर set करता हूँ और मुझे एक चौड़ी line प्राप्त हो जाती है
scale पैमाना साधारणतया brush के व्यास को नियंत्रित करता है और आप इसे keyboard के बड़े कोष्ठकों से भी नियंत्रित कर सकते हैं
खुले बड़े कोष्ठक की मदद से मैं brush के आकार को कम कर सकता हूँ और बंद बड़े कोष्ठक से मैं इसके आकार को बढ़ा सकता हूँ
आप देख सकते हैं कि brush लगभग अदृश्य है
अतः मैं बिना वह स्थान छोड़े जिसे मैं paint कर रहा हूँ brush के आकार को समायोजित कर सकता हूँ
यदि gimp gimp के लोगों में से कोई कुछ करना चाहता है तो मैं slider को वापस 1 पर ले जाने के लिए एक button चाहूंगा
अतः scale विकल्प को कवर किया गया है
और मैं अगले tutorial में brush को विस्तार से cover करूँगा
यहाँ pressure sensitivity नामक एक विकल्प है और मैं इसे image को एडिट करते समय प्रयोग कर सकता हूँ अतः
opacity पर एक नज़र डालते हैं
अब जब मैं बिना अधिक दबाव के इसे खींचता हूँ तो आपको एक line प्राप्त होती है जो रंग में gray होती है और जब मैं दबाव बढ़ाता हूँ तो मुझे gray रंग की line प्राप्त होती है और जब मैं दबाव कम करता हूँ तो मुझे हल्के रंग की line प्राप्त होती है
यह विकल्प लाभप्रद है यदि आप एक mask को पेंट कर रहे हों
यह काफी लाभप्रद होता है
अगला विकल्प hardness hardness है
जब मैं बिना अधिक दबाव के खींचता हूँ तो एक soft border प्राप्त होता है और जब मैं दबाव बढ़ाता हूँ तो paint brush एक pen की तरह कार्य करता है
जब मैं pencil tool का चयन करता हूँ और खींचता हूँ तो मुझे hard border प्राप्त होता है और यह एक hard border बना सकता है यदि वास्तव में tablet पर दबाव डाला जाता है
मैं pressure sensitivity के साथ brush के आकार को बदल सकता हूँ
इसके अलावा मैं pressure sensitivity के साथ रंग भी बदल सकता हूँ
अतः मैं background रंग से दूसरा रंग चुन सकता how यह यहाँ कैसे किया जाता है
अतः इस लाल रंग का चयन करते हैं
और foreground रंग के लिए इस अच्छे हरे रंग का चयन करते हैं
और जब मैं कम दबाव के साथ चयनित रंग के साथ पेंट करना शुरू करता हूँ तो मुझे हरा रंग प्राप्त होता है और जब मैं दाब
और रंग हरे और लाल रंग के बीच में बदलता है
अंतिम विकल्प gradients से रंगों का प्रयोग करना है
gradients का चयन करने के लिए फ़ाइल dialogs और gradients पर जाएँ
यहाँ gradients है
और अब मैं सिर्फ इस window को खोलता हूँ और इसे यहाँ खींचता हूँ और अब यहाँ मुझे एक gradient प्राप्त होता है
gradients में मेरे पास बहुत से patterns हैं
इसका चयन करते हैं और अब मैं यहाँ वापस आता हूँ
अब जब मैं paint कर रहा हूँ paint इस pattern के माध्यम से gradient पर जाता है
gradients के साथ लिखना या कार्य करना जैसे कार्य करने के लिए यह काफी मजेदार है
यह tube से बना हुआ प्रतीत होता है
ये gradient के विकल्प थे
ये विकल्प उन सभी tools के लिए समान होते हैं जो उपयोग करते हैं brushes
यानी pencil paint brush इरेज़र और airbrush जिनके कुछ अतिरिक्त विकल्प होते हैं
ink में कोई brush नहीं होता किन्तु इसमें बहुत से अन्य विकल्प होते हैं
clone tool clone tool healing tool healing tool perspective clone tool perspective clone tool और समान tools जैसे blur blur sharpen sharpen या dodge dodge और burn burn जैसे tools में भी ब्रशों का विकल्प होता है
अब pencil एवं paint brush पर वापस आते हैं
इसे पुनः साफ़ करते हैं
यहाँ कुछ tricks हैं जिन्हें आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं
पहली trick एक line खींचने के बारे में है
जब मैं एक सीधी line खींचने की कोशिश करता हूँ तो यह थोड़ा कठिन होता है
लेकिन जब मैं पहले एक click करके एक बिंदु set करता हूँ और shift की key दबाता हूँ तो मुझे एक सीधी रेखा प्राप्त होती है
यहाँ मुझे एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाती है
अगली trick सिर्फ एक बिंदु set करना और shift + ctrl दबाना है और अब मेरी line का चक्रण 15 degrees पर locked हो जाता है
और इसलिए मैं आसानी से निर्धारित कोणों के साथ सीधी रेखाएं खींच सकता हूँ
यहाँ यह कितना अच्छा master piece है
यहाँ कुछ और भी है जो आप shift की key के साथ कर सकते हैं
उसके लिए gradient tool का चयन करें
चुने हुए gradient के साथ एक line खींचें और आपको बहुत से रंग प्राप्त होते हैं
मैं एक छोटे brush का चयन करता हूँ और gradient tool को deselect करता हूँ और अपने मानक रंगों का चयन करता हूँ
अब जब मैं ctrl की key दबाता हूँ मैं उस line से एक रंग चुन सकता हूँ जो मैंने खींची है और आप देख सकते हैं foreground रंग नीले रंग की tone में बदल गया है
अतः मैं image के बाहर कहीं से एक रंग so सकता हूँ जो काफी अच्छा हो
और यदि आप एक picture में कुछ paint करना चाहते हैं और इसमें वही रंग है जो आप भरना चाहते हैं
इस पर सिर्फ ctrl दबाकर click करें और आपको आपके pallet में वह विशिष्ट रंग प्राप्त हो जाता है
यह एक अच्छी trick है
साधारणतया इरेज़र tool pen या brush के समान tool है क्योंकि यह उनके बिल्कुल विपरीत है
इरेज़र भी paints करता है किन्तु यह background रंग प्रदान करता है
आप यहाँ यह देख सकते हैं
लेकिन उसके लिए आपको pressure sensitivity pressure sensitivity या opacity opacity को deselect करना चाहिए
जब मैं सिर्फ foreground रंग और background रंग को काले और सफ़ेद रंग में switch करता हूँ और सफ़ेद रंग को foreground रंग में switch करता हूँ और pen का चयन करें मुझे इरेजर के समान प्रभाव प्राप्त हो सकता है
रंग बदलने के बाद erasing के फलस्वरूप काला रंग प्राप्त होता है
आप x की key दबाकर foreground एवं background रंग को बदल सकते हैं
मैंने विस्तारपूर्वक pencil paint brush और इरेज़र पर भी चर्चा की है
अधिक जानकारी के लिए
यह tutorial प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा आपसे विदा लेता हूँ